घर का रंग सफेद है घर में बहुत सारे खिड़की लगे हुए हैं।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

यहां पे बहुत लोग आदमी है यहां पे टेंट लगा हुआ है।

गाड़ी सड़क पर चलते हुए दिख रहा है यहां पे एक दरवाजा लगा हुआ है।

आपके सामने बहुत बड़ा बिल्डिंग भी दिख रहा है बिल्डिंग का रंग है सफेद।

यहां पे एक पुरुष पत्थर पर बैठा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे गाड़ी छपे हुए हैं पोस्टर में लिखा हुआ है।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

यहां पे बहुत सारे दरवाजा दिख रहे हैं यहां पे बहुत सारे डब्बे टंगे हुए हैं।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

यहां पे एक घर है घर में बहुत सारे दरवाजा लगे हुए हैं

घर का रंग सफेद और लाल है यहां पे अ केला का पौधा गड़ा हुआ है।

यह पे अग्निशामक भी रखा हुआ है सामने एक शीशा भी है।

यहां पे ट्रैक्टर भी दिख रहा है।

शीशा के अंदर दो बल्ब जल रहा है।